जोकि चितकवरे रंग का सर्ट पहने हैं और नीले रंग का इस पैंट पहने हैं।

चित्रकारी की हुई है जहाँ पे ढेर सारे कार्टून कैरेक्टर बने हुए हैं।

यहां ऊपर होल्डिंग पे बड़े-बड़े अक्षरों में इंग्लिश में बर्गर किंग और हिंदी में बर्गर किंग लिखा हुआ है।

यहां देखने में कोई मेले का दृश्य लग रहा है।

जिस्म जो ये सामने बड़ी जलपरियां हैं। जे लगता है इनका पानी सूख गया है।

यहाँ पै कुछ बच्चे खेल रहे हैं रात --

यहां पे आयडिया स सिम का बड़ा सा बैनर लगा हुआ हैं यहां पे।

कुछ स्त्रियाँ भी हैं कुछ पुरुस भी हैं।